यह दृश्य एक दुकान को दर्शा रहा है।

कुछ उर्दू में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारे पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

के छत पर एक टंकी दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ एक चिमनी भी दिखाई दे रही है।

साइड में एक सादा रंग का बाल्टी भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे की तरफ कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बगल में इमारतें दिखाई दे रही हैं।

इसमें बाटा और एम सारीज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारे सामान बिकते हुए दिखाई दे रही हैं।

और सेफा और टो टेबुल भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे में शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

जिसमें बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जमीन कच्ची मिट्टी का दिखाई पड़ रहा है।

इस दृश्य में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

और एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में सामने की तरफ एक पेड़ का डाली दिखाई दे रहा है।

एक्वेरियम के अंदर कुछ मछली दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पर एक ऐ_सी भी दिखाई दे रहा है।

जिसे ग्रीन बैरियर से भाग किया गया है।

इस चित्र में बहुत सारे जिम के मशीन रखे हुए दिख रहे हैं।

और पॉल भी दिख रहा है जिसका रंग लाल किया हुआ है।

इस चित्र में एक टेबल और सोफा दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में सामने की तरफ एक इमारत दिखाई दे रहा है।

नीचे का जमीन मार्बल से बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीचे की तरफ कुछ पौधे भी उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर खुला आसमान भी दिख रहा हैं।

पीछे की तरफ एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

और जमीन पर एक पीड़ा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक मिठाई दुकान का है।

जमीन पक्का किया हुआ दिखाई दे रहा है।

और रोड पर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पर कुछ पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।